यह दृश्य में एक रूम के अंदर की पिक दिखाई दे रही है।

और इसकी खिड़कियां भी नजर आ रही है।

और ब्राउन की सेटर भी लगी हुई है।

यहां दृश्य में एक स्टेज का पिक नजर आ रही है।

और सामने के दीवार पे कुछ लिखा हुआ है।

एव ब्लू कलर की कपड़े बिछी हुई टेबल पे वो आयरन करते हुए दिखाई दे रहा--

एक व्हाइट कलर की कार लगी हुई है।

और ऊपर ग्रीन कलर के कपड़े से छतरी बनाई हुई है।

दृश्य में एक फल की दुकान दिखाई दे रही है।

और दीवारो पे कुछ सामान भी टंगे हुए नजर आ रहे है।

और साइड के दिवार पे शिशा लगी हुई भी दिखाई दे रही है।

और इसके साइड में एक लाइन का बल्ब भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ चेयर भी रखे हुए हैं और काउंटर बना करके उस पे बहुत सारे सामान भी रखे हुए हैं।

और नीचे डोरमेंट भी बिछा हुआ है।

खिड़कियों पर लोहे की रेलिंग लगी हुई है और छते पर फैन भी नजर आ रहा है।

और कुछ आदमी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और साइड में एक झंडा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और उस पे मां लिखा हुआ है और तीन चोंगे भी लगे हुए हैं।

जो ग्रीन ब्लू और येलो लाइट से सजाई हुई है।